एक पीले कलर का ट्रक भी दिखाई दे रही है ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है।

गाड़ी के पिछे एक स्कूटी और मोटरसाइकिले भी खड़ी दिखाई दे रही है।

बस काफी बड़े दिखाई दे रहै है बस में नीले पट्टे लगे हुए दिखाई दे रहै है।

दो बोर्ड नीले कलर के लगे हुए हैं जिस पर एस. बी. लिखा दिखाई दे रहा हैं।

ईंटे दिखाई दे रही है और यहाँ पर टायर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर एक पलंग भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पलंग बिलकुल सामने रखा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे एक सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सफेद पत्ते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ के पास एक सफेद बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

एक झूला भी दिखाई दे रहा हैं लाइटे जलती दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक लाल बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है बस का कलर लाल है बस के आगे एक ठेला भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला है।